लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ लोग पैदल दिख रहे हैं और रात का समय है। पेड़ भी नज़र आ रहा है साइड में।

और एक टोकरी में सेब रखे हुए हैं। एक कैरेट रखी हुई है ब्लू कलर की।

इसमें अ चार टेबल्स दिख रही है हमें।

अ वेजिटेरिअन एंड नौज वेजि --

और उन्हीं से वो भैया से दो भैया लोग और बात कर रहे हैं।

और जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ तो उसके पर से ये जो है वो दिखाई दे रही है।

बहोत बड़ा हॉल है।

नीचे पेड़ है और एक अंकल जा रहे है जिनके हाथ में कुछ रखा हुआ है।

हा एक डलिया में हरी मिर्च भी रखी है और भी है।

इसमें एक कैफे है जिसका नाम अ द सिटी कैफे डला हुआ है।